जो गेट के पास है एक आदमी ने --

और बहुत सारी बच्चियाँ गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

और बहोत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहा पर बहोत सारी चियर दिख रही है जो लाल रंग में है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा हैं जो हाथ में सफेद कागज लिए बैठा हुआ--

यह एक डेंटल क्लीनिक दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सफेद रंग की मशीनें दिखाई दे रही है।

नीचे में गमला दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे छोटे पौधे --

और उसे पे प्लास्टिक से रैपर किया हुआ है और कुछ--

बड़े बड़े लोहे पिलरें नजर आ रही है और एक नीले रंग का ड्राम जो --

और बड़ी बड़ी कांचे दिख रही है घर में जो नीले रंग की है और सफेद में--

चम्मच भी दिख रहा है जो कॉफी के अंदर रखी हुई है कॉफी का रंग --

इसमें से एक लड़का हरे और सफेद टी शर्ट पहने ग्रिल पकड़ा--

और बहुत सारे पेड़ और लाइन वगैरह भी दिख रहे हैं।

एक केक गुलाबी और सफेद में है और उसमें लाल रंग की चेरी लगी हुई है।

यह एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है ह जहाँ पर लिखा हुआ है।

वो हरा भरा हैं और वहाँ पर एक लाल रंग का बैठने वाला--

और बहोत सारे टेबल और चेयर दिख रहे हैं जो सफेद रंग में है।

और पीले रंग में हैं बहुत सारे झूमर रंग बिरंगे पीले और नीले में दिख रहे हैं।

रूम का कलर है लाल रंग का है और अंदर में कुछ समाने--

यहाँ पर दीवाल में भी शर्ट का डिजाइन बना हुआ है।

और एक लेडीज और एक आदमी हाथ में बैग लिए --

यह एक घर दिखाई दे रहा है यहां पर धन लक्ष्मी ज्वेलर्स लिखा हुआ--

बहुत सारी स्कूटी और बाइक नजर आ रही है स्कूटी का रंग सफेद में --

और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ए ठीक किनारे में एक लाल कपरा पहने एक आदमी देखा--

और ठीक नीचे बहुत सारी बाइक और ए --

यह एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है और कु--

और यहां तीन आदमी जो काम करते हुए दिखाई दे रही है दो आदमी और एक औरतें जो लाल रंग का कपड़ा पहने--

यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ए_शी भी जो सफेद रंग का है दिखाई दे रहा है।

और दो बच्चे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बहुत सारे टेबल चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।

जो लाल और नीले रंग में है और यहाँ पर चेयर क ऊपर --

काले कलर के पर्दे लगे हुए हैं बड़े से और एक बेड दिखाई दे रहा है वहाँ पर दो तकिया भी नजर आ रहा है बेड का चादर नीले रंग का --

अंदर में एक फ्रिज दिखाई दिया जिसमें कोल्डड्रिंक वगैरह है बहुत सारी बिस्किट भी --

यह एक स्टेशन का प्लेस है जहाँ पर --

यह एक चर्च है जहां पर जीजस को टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।